पिलर मारे हुए हैं जो दीवाल को हैं और यहां पे लाइटें लाइट को भी शो किया गया है।

रात का टाइम है और मीनार पर पूरी टोटली व्हाइट कलर की लाइटिंग लगाई हुई है।

और यहां पे है लड़के जो यहां पे नाव को चला रहे हैं।

और यहां पे गले में हे हेडफोन डाला हुआ है हाथ में बॉटल है पानी की काले कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

लगाया हुआ है पीछे भी बॉयज है आदमिया है जो वहां पे भी वही काम कर रहे है एक रस्सी हैं।

झाड़ू ग्रीन कलर का है और वहां पे आसमान भी नजर आया दूजा --

कुछ लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं और ओपनिंग स्कूल लिखा हुआ भी है।

और यहां पे इतने दरवाजे खुले हुए हैं जो यहां पे दरवाजों के साइड में एक पानी की बॉटल भी दिख रही है।

अ थ्री सिक्सटी यहां पे है झुम्बर का कलर व्हाइट है।

हाथ में लकड़ी लेकर और एक हाथ में सेहरा के वाले में है सांप जो लकड़ी का ही है।

और यहां पे कीबोर्ड भी है और लैपटॉप जरूरत होती है वहां पे पीछे हैं।

और आसमान नीला नजर आ रहा है और ये पानी आ रहा है पानी व्हाइट व्हाइट जो चमक रहा है पानी चमक नजर आ रही है।